और ये पीले कलर का जैसे की कुछ मेथी वहाँ पे उठाने वाला हो या कुछ करने वाला हो | ये बोहोत अच्छा है पेड़ व्हाइट कलर का र --

जैसे की लग रहा की कोई मंदील है वहाँ पे एक स्टील का खूब अच्छा से बनाया हुआ है और ईटा का मकान दो-तीन मंजिल बना हुआ है।

और एक गेट भी जिस से आ जा सके वह लगा हुआ है अभी और गुलाबी-गुलाबी कलर का एक देवाल --

ये कोई की चेन्स का मूर्ति बना हुआ है। लकिन दोनों हाथ भी नहीं है दोनों हाथ कटा हुआ है। आधा भी आधा फोटो पूरा शरीर है भी नहीं आया है और पीछे उसके-उसके पीछे कुछ पेड़-पौधे हरा-भरा है।

और उ उ किसी टॉवर में बहोत सारा तार जा रहा है ना वो भी है और निचे हरा-भरा पेड़ भी है कुछ पाइप भी गया है पानी भी गिर रहा होगा।